और इधर घास पूस बहुत सारा दिख रहा है खुला आसमान दिख रहा है।

एक आदमी चेयर बैठा हुआ है पीछे बहोत सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

बहुत सारे पोस्टर लगे हुए हैं यहां पे दुकान के अंदर एक कंप्यूटर दिख रहा है।

इधर बहोत सारी ईटा फेंका हुआ है एक ऑटो खड़ा है।

दुकान के अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्लेट रखे हुए हैं अलग अलग प्रकार के कटोरी रखे हुए हैं।